करते हैं। यहाँ पर सभी लोग आते हैं मज़े लेते हैं। किनारे समुन्दर किनारे में --

और अच्छा लगता है। उनको घूमना यहाँ पर फोटो वगेरा लेते हैं।

रिपेयरिंग की जाती है और अभी मोबियल वगैरह रिपेयरिंग यहाँ पर की जाती हैं। मोडिफाई --

मॉर्निंग टाइम शाम टाइम को भी लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं।

हेन रखे जाते हैं। पाला जाता है उनको। लोगों को देखने के लिए अच्छेे --

मिठाइयां है | तरह-तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं | पेड़े और वो से सजाया जाता है |